यहाँ पुराना सा किला दिख रहा है जिसमे अंदर दो दरवाज़े दिख रहे है खिड़कियाँ भी दिख रही है।

छोटे पौधे पीछे बड़े पेड़ लगे हुए है आसमान दिख रहा है बड़ा बिजली का खंभा लगा हुआ दिख रहा है।

केबिन में कुछ पेपर्स कॉपी रजिस्टर्ड टेप रखे हुए है अलग कम्प्यूटर्स भी रखे है चेयर दिख रही हैं ।

यहाँ छोटी -सी कपड़ो की दुकान दिख रही है जिसमें लेडिस कपड़ॆ दिख रहे है अंडरगार्मेंट्स भी रखे हुए हैं ।

यहाँ छोटा सा स्कूल दिख रहा है जिसके ऊपर टीनो की चादर --

पो बरसाती टंगी हुई है सीढियाँ दिख रही है ऊपर रोड भी लगी हुई दिख रही हैं |